दो मंजिला है जो देखने में काफी सुन्दर लग रहे है बहुत सारे बाइक और आदमी भी आए हुए है जो पैसे निकलने शायद आए है।